बड़े-बड़े पेड़ तथा झाड़ियां दिखाई दे रही है सड़क दिखाई दे रही है सड़क प मिट्टी दिखाई दे रही है पास ही में एक छोटी सी झोपड़ी भी दिखाई दे रही है कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्कूटी दिखाई दे रही है स्कूटी पर लड़की बैठी हुई है जिसने सफेद कलर की टीशर्ट पहनी हुई है पास ही में मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने अपने आगे टेबल लगाई हुई है टेबल पर कुछ दवाइयां दिखाई दे रही है।

चेक्स की शर्ट पहनी हुई है उसने और उसके हाथ में एक पेन दिखाई दे रहा है वो डायरी पर कुछ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है।

वह डॉक्टर है और वह दवाई लिख रहा है और यहाँ पर दो आदमी और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसने जरकिन पहनी हुई --

वहा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है उसके उपर कुछ सामान रखा है पीछे दरवाजा दिखाई दे रहा है अलमारी दिखाई दे रही है ऐ.सी. लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

क्रीम कलर दिखाई दे रहा है इसने ऑरेंज कलर की टोपी लगाई है पीछे आसमान दिखाई दे रहा है।

एक वो पीले कलर का सीमेंट का गड्ढा भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

डायनासोर का रंग नीचे से सफेद दिखाई दे रहा है पीछे हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं जिन्हों में छोटे-छोटे फूल भी लगे हुए हैं।

और एक औरत दिखाई दे रही है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी है।

पानी बहता दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है वो नीचे की तरफ भी गोल-गोल पानी में दिखाई दे रहा है।

नीले रंग की बॉर्डर पीछे बनी हुई दिखाइ दे रही है।

पानी दिखाई दे रहा है आसपास नीले कलर का कुछ दिखाई दे रहा है पीछे एक दीवार दिखाई दे रही --

पर एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब काफी बड़ा दिखाई दे रहा है तालाब के आसपास स्टील की रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है बाहर की तरफ एक चबूतरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

बाहर एक एसी लगा हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के आसपास पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

और आसपास दो बट्टे बसें भी दिखाई दे रही हैं।

उसमें एक डंडा लगा हुआ है।

यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रही है चर्च के आगे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफेद कलर की है।

पास ही में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है पास में एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका पिंक कलर है --

समुद्र में कुछ और भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है और पेड़ दिखाई दे रहा --